और सामने बहुत से पेड़- पौधे भी दिख रहे है हरे -भरे पेड़ -पौधे हैं।

पास में कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं जोकि हरे-भरे पेड़ हैं।

जेके दीवारों पर रा रेड कलर को पेंट है।

शॉप के ऊपर एयरटेल लिखा हुआ है।

बिल्डिंग में लाइटें जलती दिखाई दे रही हैं।

और यहाँ पे ऊपरे बाकी कुछो लिखो है।

और फोर व्हीलर के आगे बहुत से पेड़ पौधे भी दि --

अंदर भी कुछ सामग्री व्यक्ति दिख रहे हैं।

जो कि हमें पैरदान दरवाजे के सामने बिछाते हैं।

और वाइट कलर के कपड़ा पहने वो व्यक्ति बाइक चला रहा है --

दिख रहा है जो कि कटिंग करवाने आया हो इस तरह से लग रहा है।

और वह उन मछलियों के ऊपर लाइट बल्ब जल रहे हैं जो वाइट कलर के बलफ हैं।